ये एक फोटो है और इसमें कार का दिखाया जा रहा है।

का है और एक घर भी है इसमें --

और एक बाइक भी हैं और साइकिल भी हैं।

और सामने एक टीचर हैं खड़े--

ये एक फोटो हैं जो कि--

बहुत बच्चों के भी झूलने के लिए हैं झूले।

कुछ बाइक्स हैं आगे की तरफ--

ये एक फोटो हैं।

जो किसी काम का है जगह का है और जिसका पूजा भी हुआ है दो थाली में --

और बहुत ही सुंदर हैं ये ऑफिस --

ये एक फोटो हैं किसी के घर का--

कुछ बाइक्स हैं और एक साइकिल दिखाई दे रहा हैं।

ये जो फोटो हैं।

का जो रास्ता हैं वो गेट बंद हैं।

जिसमें बहुत सारे तारे हैं।

जे क फोटो हैं जो कि --

ये एक फोटो हैं जो--

ये एक फोटो हैं जो--

किसी फंक्शन का हैं और फिर--

लोगों को भेट भी हैं आंगे में--

का दिखाई दे रहा हैं और--

रोड साइड का हैं और--

जो एक साथ नहीं बईया--

और कुछ लोगों का भीड़ हैं।

ये एक फोटो हैं।

किसी जिम का हैं।

और फिर यहाँ पे कुछ--

योगा कर रहा हैं और--

बहुत से लोग हैं बैठे --

कंप्यूटर रखा हुआ है ।

ये एक फोटो है जो --

बोहोत सारे लोगों का भीड़ भी है यहाँ पे --

बनाया हुआ है और --

और कुछ कैक्टस वाला --

पेट्रोल भराने के लिए --

एक बाइक भी है जो पीछे --

ये एक फोटो है और जो किसी --

भारत पेट्रोलियम का है और एक --

जो बहुत सुंदर है।

कोई टीचिंग सेंटर है यहाँ पे--

एक पर्दा है लगाया हुआ जो --

ये एक फोटो है जो किसी जिम का है और यहाँ एक लड़की है।

मिरर भी है पीछे की तरफ --

ये एक फोटो है जो किसी मार्केट का है।

और एक ठेला है ।

ये एक फोटो है जो कि एक एक्सिस बैंक का है।

ये ए_टी_एम वाली जगह है।

बात करता दिखाई दे रहा है।

जो किसी धार्मिक स्थल का है और --

पूरा जगा जो है खली है।

आज यहाँ पे एक --

की जिम कर रहा है।

पूरा हरा भरा सा है दिख रहा है।

फास्ट फूड का काउंटर है यहाँ पे --

छिला हुआ और --

ये एक फोटो है और --

यहाँ पे कुछ लोग है।

गेंदे का फूल है इसमें बहुत सारा --

ये एक फोटो है और --

बहुत सारे घर हैं जो दिखाई दे रहे है।

किसी जिम का है ये फोटो --

और पूरा खाली है यह जगह --

ये एक फोटो है और --

जो किसी डार्क ऑफिस का है।

ये एक फोटो है।

और इसके टेबल पर लैपटॉप है।

जो कि दिखाया जा रहा --

ये एक मार्केट का है फोटो --

और यहाँ पे --

जो पूरा साफ है और --

घेरा है और--

किसी दुकान का है और --

और प्लास्टिक्स है बंडल है यहाँ पर।

ये एक किसी अपार्टमेंट का है।

ये एक फोटो है जो किसी --

और इसके दोनों तरफ --

ये एक फोटो है और --

सफेद रंग का है और बाहर के तरफ कुछ कपड़े है।

ये एक फोटो है जो --